लाइटें के खंभे दिखाई दे रहें हैं बहुत सारे पक्षी हमें दिखाई दे रहें हैं हमे यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ दिखाई दे रहीं हैं पेड़ दिखाई दे रहें हैं पौधे दिखाई दे रहें हैं हमें यहाँ पर सफ़ेद आसमान दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है बहुत सब पोस्टर्स हम दिखाई दे रहे है पेड़ हमे दिखाई दे रहे है बाईक हमे दिखाई दे रही है।

हमें एक बहुत सारी बिल्डिग दिख रही है जो सफेद कलर की है यहां पे बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है दरवाजे है यहां पर हमे बहुत सारे लोग दिख रहे है।

हमें बहुत सारी टाइल्स दिख रहे हैं एक अलमारी दिख रही है बहुत सारी सिन्दूर दिख रहे है फूल दिख रहे हैं जो फूलों का रंग है वो सफेद पीला है।

हमे यहाँ पर हमे यहाँ पर बहुत सारी कारे दिख रहीं हैं पहाड़ दिख रहे हैं हरे-हरे पौधे दिख रहे हैं और आसमान दिख रहा हैं।

हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हमें पेड़ यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमें सफेद कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं | हमें नीले कलर लाल कलर सफ़ेद कलर का पर्दा दिख रहा है | हमें एक सटल दिख रही है जो की लाल कलर की है |